इसमें बहुत सारे खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

और कुर्सियां भी दिखाई दे रही है और कंप्यूटर भी दिख रहा है।

ये गार्डन में बहोत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

आदमी भी दिखाई भी दे रहे है गार्डन के किनारे टाइल्से बिछाई गई है जो कि सफेद और क्रीमी कलर की हैं।

यहां पर सोफा भी रखा हुआ है और टाइल्से भी बिछाई हुई हैं।

यह एक दुकान है जो की दुकान की दीवार को सफेद कलर से पेंट किया गया है।

यह एक मैदान है जिसमें की हरी हरी घासें दिखाई दे रही है।

वहां पे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं और हाता भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें हरी-हरी घासे दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग को सफेद कलर से पेंट किया गया है इसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा गेट है जो की सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

इसमें टेंट भी लगाया गया है उसमें पिंक कलर का पर्दा लगाया गया है उसमें फूलों से सजाया गया है।

बोटल भी दिख रहे हैं और एक डिब्बा भी दिख रहा है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि क्रीमी कलर से पेंट किया हुआ है।

और जो कि रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं एक हंगरी भी दिखाई दे रहा है किताबें भी दिख रही--

इसमें हाता भी दिखाई दे रहा है जो की ब्लू और सफेद से पेंट किया गया है।

बैट बॉल भी दिखाई दे रहा है और बॉल भी दिखाई दे रहा है।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

दरवाजा और खिड़कियां लगाई गई हैं जिसमें कि शीशा लगाया गया है।

यहां पर झींगुर भी दिखाई दे रहा है जो कि सफेद और भूरा कलर का दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बिल्डिंग भी दिख रही है जोकि सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।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

तीन कलर का दिखाई दे रहा है जो कि पीला पिंक और हरा दिख रहा है।

यहां पर बस भी दिख रहे हैं जोकि पीला कलर से पेंट किया हुआ है।

आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है।

तारे भी खींची हुई है बहुत सारे बाइके दिख रही हैं।

में बहोत सारी लाइटें लगाई गई है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है जो की पीला कलर से पेंट किया हुआ है और दरवाजे को भूरा कलर से पेंट किया गया है।